विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ हैं।

इस चित्र में सामने सरोज इंटरप्राइजेज मथुरिया --

जलीय जंतु तैर रहे हैं और --

बोहोत अच्छी साइकिलें हैं।

सामने चित्र में एक बोहोत बड़ा मॉल दिख रहा है। उसमें का --

दिखता है। वह बोहोत सुन्दर है। उसके पहाड़ की आकृति इतनी सुन्दर --